उसके बगल में कुछ गाड़ियां लगी दिख रही है।

उसके ठीक बगल में बहुत सारे मकान दिख रहे हैं।

पीछे दीवार पर कुछ तस्वीरें टांगी हैं।

एक लड़का बैठा हुआ नजर आ रहा है।

पीछे अंधेरा दिख रहा है।

इस तस्वीर में बहोत लोग खड़े नजर आ रहे हैं एक औरत भी नजर आ रही है।

बैठने की जगह दिख रही है।

ऊपर में सफेद आसमान नजर आ रहा है।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

इधर साइड में कुछ टेबल भी रखे हुए हैं जिस पे कुछ वस्तु --

जहां पर बहुत सारे --

ऊपर की ओर कुछ लाइटें नजर आ रही है।

शीशे की खिड़कियां दिख रही है।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

नदी के किनारे बहुत सारे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

और कई पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

जो देखने में हरे भरे --

इस तस्वीर में एक पेड़ नजर आ रहा है।

पेड़ के ठीक नीचे एक नदी नजर आ रही है।

बहुत सारे सोफे दिख रहे हैं।

कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं।

घर में बहुत सारी बोड़ियां रखी हुई है।

सीढ़ियां भी नजर आ रही है कुछ लोग --

बहुत सारा पेड़-पौधा नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में कई --

वस्तुएं रखी नजर आ रही है।

बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई है।

एक बल्ब जल रहा है जिसका प्रकाश --

पूरे कमरे में दिख रहा है।

उसके नीचे कुछ लोग खड़े हैं गाड़ी का चक्का --

इस तस्वीर में --

इस तस्वीर में एक आदमी नजर आ रहा है।

तस्वीर दिख रही है उस आदमी ने गर्दन में कुछ लगा रखा है।

मकान भी नजर आ रहा है जो कि लोहे की सहायता से घिरा हुआ है।

यह पेड़ पौधे बहुत ही --

कुछ जमीन पर हरे भरे नदी किनारे --

और कुछ लोग यहां खड़े नजर आ रहे हैं।

रस्सियां भी नजर आ रही है जो लटकी हुई --

कई खिड़कियां भी दिख रही है कुछ कुर्सी --

और वो लोग थाली में कुछ खा रहे हैं।

उनके ठीक ऊपर कई पंखे लगे हुए हैं।

जमीन भी दिख रही --

इस तस्वीर में एक --

कई लोग बैठे नजर आ रहे हैं इसके बाहर एक बड़ा बोर्ड --

किनारे पे बहुत सारे पत्थर नजर आ रहे हैं।

सामने की ओर भड़ी-भड़ी पेर और जमीन --

एक नदी नजर आ रहा है।

तस्वीर में एक कमरा दिख रहा है जिसमें एक बेड लगा हुआ है।

उसके ठीक बगल में जमीन भूरी-भूरी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक पंडाल --

जिसमें बहुत लाइटें लगी हुई है।

कुछ लाइट हरा और कुछ सफेद --

सामने की ओर जमीन पर खड़ा कालीन बिछा दिख रहा है।

इसके पीछे एक पंखा नजर आ रहा है।

टेबल हैजिस पे एक ट्रे र --

तस्वीर में एक लड़का नजर आ रहा है।